एक चेयर दिखाई दे रही है।

एक खेल का मैदान दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे फूल भी लगाए गए हैं।